पोस्टर लगे हुए है एक लाइट का खम्भा भी लगा हुआ है लाइट वाले तार लगे हुए है बहुत सारी गाड़ियां भी खड़ी हुई है।

कुछ लोग खड़े हुए है कार खड़ी हुई है गाड़ी खड़ी हुई है साइकिल खड़ी एक खम्बा लगा --